एक छोटा मोठा दुकान है और यहाँ बहोत सामान है और बहोत ही मस्त-मस्त है।

हुए उधर से एक औरत आ रहा है और ये भवन बहुत ही बड़ा है और यहाँ दो सफ़ेद कार खड़ा है।